बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है लकी सूट सेंटर --

मुझे एक झांकी टाइप सी नजर आ रही--

कमरे के अंदर बहुत सारी अलमारियां भी पड़ी हुई है और अलमारीयों में ब्लैक रंग का भी कुछ पड़ा हुआ है।

सोफे रखे हुए हैं सोफों का रंग ब्लैक रंग का है।

और आगे टेबल सा भी पड़ा हुआ है छोटा सा वाइट रंग का--

ये एक आदमी बैठा हुआ है जमीन पर और उसके सामने जूते चप्पल पड़ी हुई--

वहां पर एक काउंटर पे कुछ कॉफी के मग पड़े हुए हैं और एक लड़का कप में--

सामने एक काउंटर रहती है काउंटर के ऊपर एक आदमी बै --

और एक गेट भी लगा हुआ है जो व्हाइट का रंग का है।

और एक छोटा सा पूल सा भी बन--

और भी कलर के हैं और उसके ऊपर एक काउंटर सा भी लगा हुआ है।

कुछ लोग बैठे हुए हैं जमीन पर और--